यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रोपर्टिज विंडो के बारे में है
यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है और आवाज वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रोपर्टिज विंडो क्या है
प्रोपर्टीज़ विंडो में मटीरियल पैनल क्या है
प्रोपर्टीज़ विंडो के मटीरियल पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
प्रोपर्टिज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएँ भाग पर स्थित है
हम प्रोपर्टिज विंडो के पहले पैनल्स और सेटिंग्स को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं
प्रोपर्टिज विंडो में अगले पैनल्स को देखते हैं
पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रोपर्टिज विंडो का आकार बदलना चाहिए
प्रोपर्टिज विंडो के बाएँ भाग पर बायाँ क्लिक करें पकड़कर रखें और बायीं ओर ड्रैग करें
अब हम प्रोपर्टिज विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं
ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल -ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदलें देखें
प्रोपर्टीज़ विंडो के सबसे ऊपरी रो पर जाएँ
प्रोपर्टीज़ विंडो के सबसे ऊपरी रो में sphereपर बायाँ क्लिक करें
यह मटीरियल पैनल है
यहाँ हम सक्रीय ऑब्जेक्ट में एक मटैरियल जोड़ सकते हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से क्यूब में एक स्टैंडर्ड मटैरियल जुड़ गया है
यह मटैरियल नीले रंग से चिह्नांकित मटैरियल स्लॉट का हिस्सा है
एक नया मटैरियल स्लॉट जोड़ने के लिए ऊपरी दायें कोने पर प्लस सिग्न पर बायाँ क्लिक करें
एक नया मटैरियल जोड़ने के लिए न्यू पर बायाँ क्लिक करें
डिफ़ॉल्ट रूप से सभी नये मटैरियल्स बुनियादी सेटिंग्स के साथ जुड़ गये हैं
नये मटैरियल स्लॉट को डिलीट करने के लिए प्लस सिग्न के नीचे माइनस सिग्न पर बायाँ क्लिक करें
हम अपने असली मटैरियल पर वापस आ गये हैं
इसे नया नाम व्हाइट दें
मटैरियल स्लॉट बॉक्स और प्रीव्यू विंडो के बीच में इद नेम बार में मटीरियल पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर व्हाइट टाइप करें और एंटर बटन दबाएँ
मटैरियल और मटैरियल स्लॉट दोनों ही सफेद में बदल गये हैं
हम बिना नया मटैरियल स्लॉट जोड़े एक नया मटैरियल जोड़ सकते हैं
मटैरियल आईडी नेम बार के दाईं ओर प्लस सिग्न पर बायाँ क्लिक करें
मटैरियल स्लॉट में एक नया मटैरियल जुड़ गया है
इसे नया नाम रेड दें
हम इस मटैरियल का रंग सफेद से लाल में बदलने जा रहे हैं
किन्तु सबसे पहले मटैरियल आईडी नेम बार के नीचे बटन्स के रो पर एक नजर डालें
सरफेस सक्रीय ऑब्जेक्ट के मटैरियल को उसकी सतह के रूप में प्रस्तुत करता है
ब्लेंडर में यह डिफ़ॉल्ट रेंडर मटैरियल है
वायर मटैरियल को एक वायर्ड मेश में प्रस्तुत करता है जो ऑब्जेक्ट के बहुभुज के केवल किनारे प्रदर्शित करता है
यह एक लाभदायक टूल है जो मॉडलिंग और रेंडरिंग पर समय बचाता है
हम ब्लेंडर में मॉडलिंग के बारे में अधिक एडवान्स्ड ट्यूटोरियल्स में वायर्ड मेश एडजेस और पॉलीगॉन्स के बारे में विस्तार से सीखेंगे
वोल्यूम मटैरियल को सक्रीय ऑब्जेक्ट के पूरे घन के रूप में प्रदर्शित करता है
सरफेस और वायर के लिए मटैरियल सेटिंग्स अलग हैं
हम इन सेटिंग्स को विस्तार में देखेंगे जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में वोल्यूम मटीरियल इस्तेमाल करेंगे
हालो मटैरियल को सक्रीय ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हेलो कणों के रूप में प्रदर्शित करता है
फिर से मटैरियल सेटिंग्स बदल गयी हैं
जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में हेलो मटैरियल इस्तेमाल करेंगे तब हम इन सेटिंग्स को विस्तार से देखेंगे
ध्यान दें कि इनमें से कोई भी ऑप्शन्स 3डी व्यू में प्रदर्शित नहीं हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें केवल रेंडर डिस्प्ले में देख सकते हैं
रेंडर डिस्प्ले के बारे में सीखने के लिए टयूटोरियल प्रोपर्टिज़ विन्डोज़ के प्रकार भाग 1 देखें
सरफेस पर वापस जाएँ
हम सर्फेस मटैरियल की सेटिंग्स को देखेंगे
नीचे प्रिव्यू विंडो है जो रेंडर्ड मटैरियल का प्रिव्यू दर्शाती है
दायीं तरफ विभिन्न प्रिव्यू ऑप्शन्स के लिए बटन्स का कॉलम है
प्लेन स्फीयर क्यूब मंकी हैर और स्काई अब अपने मटैरियल का रंग सफेद से लाल में बदलते हैं
डिफ्यूज पर जाएँ
डिफ्यूज के नीचे व्हाइट बार पर बायाँ क्लिक करें
एक कलर मेन्यू प्रदर्शित होता है
हम इस मेन्यू से अपनी इच्छानुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं
मैं लाल चुन रहा हूँ
बायाँ क्लिक करें और सफेद डॉट को रंग वृत्त के केंद्र में नियंत्रित करें
अपने माउस को वृत्त के लाल क्षेत्र की तरफ ड्रैग करें
मटैरियल पैनल में 3डी व्यू और प्रिव्यू विंडो में क्यूब का रंग सफेद से लाल में बदलता है
दूसरा तरीका है डिफ्यूज के नीचे फिर से रेड बार पर बायाँ क्लिक करें
क्या आप रंग वृत्त के नीचे र जी और ब नामक तीन बार्स देखते हैं
र पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ
जी पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 0 दबाएँ और एंटर दबाएँ
ब पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 0 टाइप करें और एंटर दबाएँ
अब क्यूब का रंग पूरा लाल है
उसी प्रकार से स्पेक्यूलर के नीचे व्हाइट बार पर बायाँ क्लिक करें
कलर मेन्यू में कोई भी रंग चुनें
मैं हरा चुन रहा हूँ
अतः देखें क्यूब की चमक सफेद से हल्के हरे में बदल गयी है
यदि मैं फिर से सफेद मटैरियल इस्तेमाल करना चाहूँ
मैं यह वापस कैसे पाऊँगा
मटीरियल इद नामे बार पर जाएँ
यहाँ नेम बार की बायीं तरफ एक और गोल आइकन है
स्फीयर आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह मटीरियल मेन्यू है
सभी मटैरियल्स जो सीन में इस्तेमाल किये गये हैं वह सब यहाँ सूचीबद्ध हैं
अभी यहाँ केवल दो मटैरियल्स प्रदर्शित हैं रेड एंड व्हाइट
व्हाइट पर बायाँ क्लिक करें
एक बार फिर से क्यूब लाल से सफेद में बदल गया है
डिफ्यूज और स्पेक्यूलर दोनों के नीचे इंटेंसिटी बार्स हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ्यूज के लिए इंटेंसिटी 08 और स्पेक्युलर के लिए 05 है
यह मटैरियल फिनिश के प्रकार की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है
मैट फिनिश का मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर दोनों के लिए कम इंटेंसिटी
उदाहरणस्वरुप प्राकृतिक लकड़ी के मटैरियल में मैट फिनिश होगा
ग्लॉसी फिनिश मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर के लिए अधिक इंटेंसिटी
उदहारणस्वरुप एक कार पेंट मटैरियल में ग्लॉसी फिनिश होगा
ब्लेंडर में डिफ्यूज के लिए लैम्बर्ट डिफॉल्ट शेडर है
लैम्बर्ट पर बायाँ क्लिक करें
यह डिफ्यूज शेडर मेन्यू है
यहाँ हम अपनी ज़रूरत का शेडर जैसे फ्रेस्नेल मिनार्ट टून oren नायर और लैम्बर्ट चुन सकते हैं
इंटेंसिटी की तरह विभिन्न मटैरियल्स के लिए शेडर्स भी अलग होते हैं
उदाहरणस्वरुप एक ग्लास मटैरियल फ्रेस्नेल शेडर इस्तेमाल करेगा
उसी प्रकार से ब्लेंडर में स्पेक्युलर के लिए कुक्टर डिफ़ॉल्ट शेडर है
कुक्टर पर बायाँ क्लिक करें
यह स्पेक्यूलर शेडर मेन्यू है
ब्लिन और फोंग सबसे ज्यादा साधारण शेडर्स हैं जोकि 90 मटैरियल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं
हार्डनेस ऑब्जेक्ट की स्पेक्युलरिटी या चमक की तीव्रता को निर्धारित करता है
हार्डनेस 50 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एंटर दबाएँ
प्रिव्यू स्फेयर पर स्पेक्युलर क्षेत्र एक छोटे वृत्त में सिकुड़ गया है
फिर से हार्डनेस 100 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 10 टाइप करें और एंटर दबाएँ
अब स्पेक्युलर क्षेत्र बढ़ गया है और प्रिव्यू स्फेयर पर फैल गया है
अतः यह मटैरियल पैनल की बुनयादी सेटिंग्स हैं
बाकी सेटिंग्स आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं
क्यूब में एक नया मटैरियल जोड़ सकते हैं और इसका रंग बदल सकते हैं और ब्लू नाम दे सकते हैं
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट - स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर संपर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद